इसमें ऐसी लगा हुआ है रुपए और पेड़ लगाओ जो बुरे रंग का पेड़ है।

है सामने बैठे है कुर्सी लाल रंग की जो तीन कुर्सी है।